पेहड़ से बिजली की तारें छूती हुई गुजर रही हैं।

शीशे के ऊपर एक पंखा लगा है सामने कुछ लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं।

रात का समय है पेट्रोल पंप खाली है पेट्रोल पंप की सारी लाइटें जल रही है।

ये एक पेट्रोल पंप पे जहां पे पेट्रोल लाने के लिए कार स्कूटर और बाइक खड़ी हुए हैं।

यह इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है बिल्डिंग को सफेद और लाल रंग से पेंट किया गया है बिल्डिंग के बगल में बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई हैं।

एक आदमी नीली शर्ट पहने खड़ा हुआ है।